सुंदरता को निखारने के लिए फेस-फेशियल कराने के लिए सैलून आया हुआ है।

टी.आई. करने से आपको कोई भी जॉब में आपका हेल्प करेगी ये आई.टी.आई. की डिग्री आई.टी.आई. की डिग्री काफी हेल्पफुल है।

सबसे पहले ये लोग रनिंग के लिए अपने पैरों को फ्री कर रहे हैं और ये फुटबॉल के प्लेयर है और फुटबॉल हमारे सबको बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत फुटबॉल --

लोग काफी दूर-दूर से आते हैं घूमने के लिए ये जगह घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये जगह बोकारो में स्थित है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक सिनेमा घर है यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी आते हैं मूवी - वूवी देखने के लिए यह जगह मूवी देखने के लिए बहुत ही बढ़िया है यह जगह प्रास में है इसका नाम है वेलकम आई.ए. सिनेमा में मूवी लगा हुआ है जिसका नाम है बाप रे बाप ।

अपने मन का मनोकामना पूरा होता है और यहां इस मंदिर में बहुत सारे लोग अपने माथा टेकने के लिए आते हैं पूजा भी करते हैं यहां पे खुशियां ही मिलती हैं मंदिर में पूजा करने से --